और इसमें एक जहाज भी दिखाई दे रहा है।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

यहां पे स्कूल के बच्चे खड़े है और दो मैडम भी खड़ी है।

यहां पे एक ए_टी_एम की मशीन रखी है।

जिसपे एक वैन जा रही है और वहां पे कुछ कार भी खड़ी है और कुछ आदमी भी खड़े हैं।

और इसमें फिटिंग बनी हुई है और एक पंखा भी लगा हुआ है।

यह एक स्कूल है और यहाँ पे कुछ कुर्सियाँ रखी हैं।

और सामने कुछ पानी की बोतल रखी है।

उसके पास में एक ऊपर मीटर भी लगा हुआ है।